पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जो लाइन में लिखा हुआ है जिसमें नीले कलर का और आसमानी कलर का खम्भा दिखाई दे रहा है। कु --

बहोत बड़ा घर सा दिखाई दे रहा है जोकि मंदिर कि डिज़ाइन में बना हुआ है। पीछे भी एक मंदिर सा बना दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे गेट की डिज़ाइनें बनी हुई हैं।

शटर दिखाई दे रही है। एक शटर खुली दिखाई दे रही है। एक शटर बंद दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है। नीले कलर का बहोत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।